और एक पुरुष हैं जो छत्री लगाए बैठे हैं काले कलर की और सब लोग बैठे हुए हैं।

पोटरी हैं और यहाँ पर बल्ब भी लगे हुए हैं यहाँ पर शॉप जैसी बनी हुई हैं और यहाँ पर पुरुष खड़े हुए हैं जो सफे एक सफ़ेद कलर की शर्ट पहने हैं और एक ब्लू कलर की शर्ट दिख रही --

मछली का बाजार लग रहा है जहाँ पर एक-एक स्टूल के ऊपर मछलियाँ भी रखी हुई हैं और यहाँ पर महिलायें भी हैं पुरुष भी है बहोत सारे लोग दिख रहें हैं और ये जमीन गीली हो रही है।

पीले कलर के भी दिख रहें हैं और हरे कलर की लड़ियाँ भी लगी हुई हैं यहाँ बहोत डेकोरशंस हैं और लाल और हरा कलर का कारपेट भी बिछा --

पत्थरी इलाका है जहाँ पर एक पुरुष खड़ा हुआ है। जो है वो सफ़ेद कलर की टी शर्ट नीली कलर की जैकिट और काला चश्मा भी लगाया हुआ है। नीला मफ़लर भी डाला हुआ है और नीली कलर की जिन्स भी पहना हुआ है और ये जूते भी पहना हुआ है।

जो इसके ऊपर ब्लाक कलर से लिखा हुआ है सामुदायिक स्वस्थ केंद्र यहां पर कुछ आ जालिये लगी हुई दिखाई दे रही हैं व्हाइट कलर से पेन्ट है एक बहुत बड़ा गेट दिखाई दे रहा है जो अंदर जाने का --

घास भी बहुत अच्छी दिख रही है यहा पर कुर्सी और टेबल भी रखा हुआ है यहा पर घरों के ऊपर खूब अच्छा शेड डला हुआ है जैसा ऐसा ये डिजाइन लग रहा है झोपड़ी की तरह।

एक ऑफिस लग रहा है जहाँ पर काला कलर का सोफा भी लगा हुआ है और सामने टेबल भी रखा हुआ है और दो गमले भी रहे हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर नीले कलर के पोस्टर भी लगे हुए हैं काला कलर का पंखा भी लगा हुआ है लाल कलर का गेट भी दिख रहा है यहाँ पर यह वो दीवाल है --